नीचे के तरक पानी जो है वो पूरा ही जो है ब्लै थोड़ा-सा वाइट - वाइट और थोड़ा जो है मिट्टी वाला कलर का नजर आ रहा।

सारे झंडे नजर आ रहे है यहाँ पे दो ना दो कलर के झंडे जो है ज्यादा नजर आ रहे है बीच में जो है वो और थोड़ा सा ब्लू कलर का नजर आ रहा है और दोनो साइड से भगवा कलर का नजर आ रहा है।

ऊपर कुछ लाइट के कनेक्शन गए है और यहां पे दो झंडे लगे हैं जो की ग्रीन कलर के उम्म झंडे लग रहे है और ये दिन का दृश्य है और ऊपर का आसमान पूरा ही व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन --